दुकान के बैनर पर फर्नीचर लिखा हुआ है एक आदमी पिंक कलर की शर्ट पहना हुआ खड़ा है एक आदमी तरबूज बेच रहा है।

इस इमेज में एक ऑफिस नज़र आ रहा है जो की ग्रीन कलर का पेंट किया गया है ऑफिस के ऊपर सर्वहितेश पुस्तक लिखा गया है।

इस इमेज मे एक बकरी दिख रही है जो की व्हाइट कलर के उसके बाल है उसके बालो के साथ उसके पैर काले दिख रहे है उसकी नाक काली है उसके गले मे एक रस्सी है हरे कलर की।

इस इमेज मे कुछ लोग झोपड़ी के नीचे बैठे हुए है एक टेबल पे एक डब्बा नज़र रहा है एक चेयर नज़र रही है कुछ लड़के चाय पीते हुए नज़र आ रहे है।

दो बड़ी है एक छोटी है तीनो ब्राउन कलर की है जो पर्दा है उसका कलर पिंक है जो आजुबाजु फर्निचर है उसका कलर येलो है ।

इस इमेज एक स्कॉर्पिओ नज़र आ रही है कार उसके पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है तीन फ्लोर की।

उसके बाजु में एक क्रीम कलर का अपार्टमेंट दिख रहा है उसके सामने ग्रीन कलर का एक पेड़ है।

रेलवे की पटरियां नजर आ रही है प्लेटफार्म पर कुछ लोग बैठे नजर आ रहे हैं एक बहुत बड़ी ब्रीज नजर आ रही है।

एक ब्लू कलर का खम्भा नजर आ रहा है बहुत सारी चेयर लगी हुई है एक आदमी बैठा हुआ है चप्पल उतार के।